दो हजार ओनइस का जहां पर आप देख सकते हैं एक टेंट के नीचे कुछ कार्यक्रम हो रहा है।

यह एक जंगल का दृश्य जहां आप देख सकते हैं कुछ पत्थर रखे हुआ है।

यहां आप देख सकते हैं एक लड़की है जो की डांस करते हुए नजर आ रही है।

यह एक कपड़ों की दुकान है जहां पर आप पर्दे लटके हुए नजर आ रहे हैं।

और कम से कम चार ग्राहक बुक लेने के लिए आए हैं।

ए_सी लगा हुआ है और कुछ पर्दे भी लगे हुए हैं।

यहां पर आप देख सकते हैं फार्म हाउस के ऊपर कुछ अह दो टायर रखे हुए हैं।